फिर इसमे बड़ा-सा एक देखने में लग रहा है अम कुछ है अम कुछ कॉलेज है कुछ लग रहा मंदिर भी है |

ये एक-दो कुर्सियां रखी है एक भईया उठा रहे हैं व्हाइट कलर से चारो पट्टी है

इस में बड़ा-सा एक अम बसों के लिए रोड बना हुआ है बहुत अच्छा लगता है वही बगल में

मंदिर की मूर्ति भी बैठे हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं और गुबारों से से सजा हुआ हुआ है ।

फुलों से एक भईया लोग सजा रहे हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अगल बगल व्हाइट कलर के --

एक कुकर के डब्बे रखा हुआ है एक भईया लोग उठा रहे हैं एक भईया लोग बैठे हुए हैं।

इसमे बड़ा-सा एक खुला आसमान भी है सूर्य भगवान के रोशनी भी आ रहा --

इसमे बड़ा-सा एक मकान भी है।